दिखाई दे रहे है साइकिल दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग पानी की टंकी दिखाई दे रही है छोटे स्टूल दिखाई दे रहा है रेड कलर की डस्टबिन दिखाई दे रहा है बहुत सारे फ्रेंड दिखाई दे --

एक अ-घास की झोपड़ी दिखाई दे रही है और भी ब-बहुत सारी चीजे दिखाई दे रही है कचरा दिखाई दे रहा है ठेला दिखाई दे रहा है और यहां पे एक बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।